बच्चा ब्लैक और वाइट कलर का है।

सामने एक बैनर लगा हुआ है बहुत बड़ा।

पूर्वी फार्म हाउस संजय दांगी लिखा हुआ है।

बहुत सारे टाइल्स दिख रहे हैं।

और सामने एक बड़ी सारी बिल्डिंग दिख रही है।

और यहां पर लाल कलर की टेबलों के ऊपर कपड़ा डला हुआ है।

हमें एक कांच की दीवार दिख रही है।

और पीछे बहुत बड़े-बड़े पेड़ भी दिख रहे हैं।

वो गेट के पास खड़े हुए हैं।

आसपास बहुत छोटे-छोटे मीडियम साइज के पौधे भी दिख रहे हैं।

कुछ बड़े बड़े पेड़ भी दिख रहे हैं।

हमें एक काले कलर की रेलिंग दिख रही है।

होम ऑफ आर्ट टैटू पेंट --

पास में एक जालीदार गेट भी है वो ब्लैक कलर का है।

सामने एक रेड कलर की बस खड़ी हुई है।

वहाँ पर बहुत सारे बैनर भी लगे हुए हैं।

छत पे दो लाइटें जलती हुई दिख रही हैं।

अंदर एक लाल कलर की दीवार भी दिख रही है।

आसपास हरे कलर के पेड़ लगे हुए हैं।

इस चित्र के अंदर कुछ लड़के खड़े हुए हैं।

जाली भी लगी हुई है पूरे में--

और आसपास काफी सारी हरियाली ही हरियाली है।

यह टमाटर हैं यह लाल लाल टमाटर हैं।

यहाँ पर पर्दे डले हुए हैं गेट बना हुआ है।

उसके ऊपर एक पोस्टर भी लगा हुआ है।

तालाब के एक साइड बड़ा सारा पहाड़ भी दिख रहा है।

बड़ी सारी इमारत दिख रही है।

इस चैनल के अंदर हमें एक सूरज दिख रहा है।

इस चित्र के अंदर हमें बहुत सारी सब्जियां दिख रही हैं।

और यहाँ पर मीडियम साइज के पेड़ भी हैं।

आकाशवाणी का गेट काले कलर का है।

जिस पर एस_बी_आई --

इस चित्र के अंदर एक बहुत बड़ी इमारत दिख रही है।

ये अलग अलग फ्लावर से सजी हुई है।

एक व्यक्ति खड़े होकर मैच देख रहा है।

और बहुत सारी ट्यूबलाइट्स भी लगी हुई हैं।

ब्राउन कलर की चेयर ल दिख रही है।